ब्लैक रंग की टी-शर्ट पहने हुए हैं। पैर में लेगी पहने हुए हैं।

मस्जिद सा लग रहा है। ऊपर बादल दिखाई दे रहा है। मंदिर में घंटी भी दिखाई --

एक आदमी एक रूम है।

एक आदमी खड़ा हुआ है टी-शर्ट पहनकर। एक खिड़की है।

एक नदी है। नदी में चार पाँच नाव रखे हुए हैं।

सीढियाँ पचास साठ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं।

अंदर तीन एल.ई.डी लगी हुई --

ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां भी दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों में ग्रेनाइट लगा हुआ है।